मुझे इस फोटो पर रोड दिखाई दे रही है।

काउंट का दिखाई दे रहा है। मुझे इस फोटो में सोफा दिखाई--